और सामने की तरफ एक एंबुलेंस है एक बाइक है।

पीछे बहोत सारे पेड़ हैं और एक लाइट का खंभा है।

साइड में कुछ पौधे भी है जो गमले में लगे हैं एक गाड़ी है।

सामने की तरफ व्हाइट कलर की वॉल है उसमें दो दरवाजे लगे हैं व्हाइट कलर के।

यह एक ढाबा है और सामने की तरफ बहुत सारे पौधे हैं गमलों में।

गेट है लोहे का और दो लाइट ऊपर को लगी हुई है।

एक लड़के ने व्हाइट यूनिफॉर्म पहनी है एक सिविल ड्रेस में है।

ये एक ऑफिस है साइड में एक कंप्यूटर है।

ये एक फैक्ट्री है यहां पे बहुत सारे ड्रम है साइड में।

यह एक रेस्टोरेंट है अंदर बहोत सारे इंसान हैं।

सामने की तरफ चिमनी लगी हुई है वॉल के ऊपर और भी बहोत सारा सामान है।

और यहां पर एक इंसान बैठा है उसने टेबल लगाया है और छाता है।